पीछे को टाइल्स बिछाया गया है।

करकट का पॉल खंबे देखकर करकट भी चघाया हुआ है।

यहां पे गाड़ी का शोरूम है।

एक आमदिन है एक लोरी पे हैं।

पेड़ पौधे भी हैं जो बहुत सारे हैं।

नीचे की और बहुत सारे लोग हैं जो अलग भलग कपड़े पहने हुए हैं।

इधर बहुत सारे खेलने वाला समान रखा हुआ है।

विद्यालय प दो पेड़ हैं जो हरे हरे भरे हुए हैं।

लकड़ी का जाली दे बनाया गया है।

इधर बहोत बड़े छोटे पत्थल भी हैं।

बिल्डिंग पर बहुत सारे तार घिचा हुआ है।

नीनो भी रखा गया हैं।

यहां पे भी रखा हुआ है।

पीछे का ओर पर्दा लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे घड़ी रखा हुआ है।

जिसमें के ग्लास के अंदर रखा हुआ हैं।

यह एक सीमिट छड़ का दुकान है।

यहां पे दो प्रकार के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग हैं।

यहां पे रंग-बिरंगे का फूल है लाइट भी लगाया हुआ है।

गटर पे तीन लोग आ रहे हैं।

उधर पेड़ पौधे भी हैं।

एक पलंग भी है उसपे चार तकिया रखा हुआ है।

हाथ से दो उंगली दिखा रहा हैं।

इधर पेड़ भी है जो पत्ते लगा हुआ है।